हमे बहोत बड़े बड़े पत्थर दिख रहे है पत्थरों के ऊपर से झरना दिखाई दे रहा है।

यह दीवार में ब्लू कलर का पेंट दिख रहा है।

तीन चार लोग दिखाई दे रहे है यहां पर एक हमें गेट भी दिख रहा है।

हर पल हमें ए_सी कूलर फ्रिज गीसर --

और बाथरूम का फोटो दिख रहा है यहां पर हमें बेसिन दिखाई दे रही है।